रूम के पास में दो तीन स्विच बोर्ड लगे हुए हैं।

के बगल में एक रैक बना हुआ है जहां पे कुछ सामान रखे गये है कॉपी किताब बोतल्स बैग ।

एक बुलैट बाइक भी खड़ी की गई है।

और अंदर में ढेर सारी समाने और दिखाई दे रही है।

कुछ कार्टून भी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक छोटा सा दुकान का दृश्य दिखाई दे रहा है।

कुछ ग्रील लगे हुए हैं कुछ दरवाजे बनाए गए हैं।

ढेर सारी बी_एम_डब्लू की बाईकें दिखाई दे रही हैं।

जो व्हाइट कलर की है।

यहा पे बी_एम_डब्ल्यू के लोगो भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे गेट के पास पिंक पिंक कलर के पर्दे से डिजाइन बनाया हुआ नजर आ रहा है।

वहां पे ढेर सारे फूल लगाए गए हैं।

सामने में ढेर सारे पोल दिखाई दे रहे हैं।

एक लड़की ने बैग टांगा हुआ है।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

यहां पे एक स्कूटी एक साइकल दिखाई दे रहे हैं और एक आदमी भी दिख रहा है।

इसके आस पास मुर्गे के फॉर्म दिखाई दे रहे हैं।

यूनियन बैंक लिखा हुआ नजर आ रहा है।

बीच में कटोरी भी दिखाई दे रही है।

वहां पे खाना गिरा हुआ भी नजर आ रहा है।

यहां पे ग्रीन कलर के मैट चारों तरफ बिछाया गया है।

एक ग्रिल भी लगाया हुआ है बगल में।

पुतले ने हाथ खड़े किए हुए हैं उसके बाल भी दिखाई दे रहे हैं जो ब्राउन कलर के हैं।

पत्थर के पास एक इंसान हाथ से कुछ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है।

ये पत्थर के पास में लाइटें भी जलती हुई नजर आ रही हैं।

और यहां पे थोड़े बहुत पेड़ पौधे भी कटे हुए है जो ऐसे ही बिखरे हुए नजर आ रहे है।

इस तस्वीर में बंधन बैंक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है।

यहां पे दो पेशेंट दिखाई दे रहे हैं जो पेशेंट वाली बेड्स पे लेटे हुए हैं।

घर के पास में एक छोटा सा खिड़की भी लगा बना हुआ है।

अवनी पेप्सी एजेंसी दिखाई दे रहा है।

यहां पे कुछ चप्पल जूते के दुकान भी है।

पुरी तरह व्हाइट है उसके बगल में ढेर सारी क्वीडम की चीजे दिखाई दे रही है जिनमे मछलियां लाइट जलते हुए नजर आ रहे हैं।

बालकनी भी लगे हुए हैं।

इसमें शीशे भी लगाए गये है।

यहां पे कुछ डेकोरेशन होता हुआ नजर आ रहा है।

हाथ में कुछ पकड़े हुए हैं।

लोग अपने बाल कटता कटवाते हुए नजर आ रहे हैं।

एक स्टार का सिंबल बना हुआ है।

एक आदमी खड़ा है जो फोटो खिचवाते हुए नजर आ रहा है।

उसने एक घड़ी भी पहनी हुई है।

के आस पास में दो फ्लावर पॉट भी लगाए गए है।